सामने बहुत सारी इसमें लाइटें भी लगी हुई है जो खूबसूरत लग रही है यहाँ पर छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं।